जैसा कि मैं देख पा रही हूं ये एक स्विमिंग पूल की इमेज है जिसमें काफी सारा पानी भरा हुआ है।

ये एक सड़क की इमेज है जिसमें--